ruby में object oriented programming – methods के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप निम्न करना सीखेंगे:
इंस्टैंस मेथड्स instance methods
क्लास मेथड्स class methods
एक्सेसर मेथड्स accessor methods
यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्शन 1204
ruby193
इस ट्यूटोरियल के अनुस्सरण के लिए आपके पास एक कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्टएडिटर की भी जानकारी होनी चाहिए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
शुरू करने से पहले याद करें कि हमने ttt डिरेक्टरी पहले बनायी थी
अब उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
फिर rubytutorial पर
इसमें oopmethods और cd नामक डिरेक्टरी बनायें
इंस्टैंस मेथड्स क्या हैं
इंस्टैंस मेथड्स वो मेथड्स हैं जो उस क्लास के सारे इंस्टैंस के लिए उपलब्ध होते हैं
पूर्व में हमने सीखा था कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टैंस कैसे बनाते हैं
बुनियादी स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह gedit में एक फाइल बनाएं
इसे instance_methodsrb नाम दें
मेरे पास इंस्टैंस मेथड्स के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है
आप ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं
मैंने इस उदाहरण में product नामक एक क्लास परिभाषित किया है
मैंने इंस्टैंस वेरिएबल्स name और price को इनिशिअलाइज़ करने के लिए एक इनिशिअलाइज़ मेथड कॉल किया है
मैंने name और price नामक इंस्टैंस मेथड्स को भी परिभाषित किया है
उनमें से प्रत्येक इंस्टैंस वेरिएबल क्रमशः name और price रिटर्न करते हैं
इंस्टैंस मेथड्स सामान्य मेथड्स की तरह ही परिभाषित होते हैं
पूर्व में हमने सीखा था कि ruby में मेथड्स कैसे बनाते हैं
जल्द ही हम देखेंगे कि ये मेथड्स सारे इंस्टैंसेस के लिए कैसे उपलब्ध होंगे
अब जो लॉजिक हमारे पास है उसे प्रयोग करते हैं
यहाँ मैंने एक product ऑब्जेक्ट को इनिशिअलाइज़ किया है और इसे product_object_1 नाम दिया है
मैंने इसे name value और price value के साथ इनिशिअलाइज़ किया है
इनिशिअलाइज़र ब्लॉक इंस्टैंस वेरिएबल्स @name और @price को वैल्यूज़ पास करता है
अब यह प्रोडक्ट इंस्टैंस या ऑब्जेक्ट इंस्टैंस मेथड्स name और price को प्रयोग कर सकता है
इन मेथड्स को कॉल करने पर हमें इंस्टैंस वेरिएबल्स में संचित वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं
अब इस code को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: ruby instance_methodsrb और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं
आप देखेंगे कि आपने जिन वैल्यूज़ से ऑब्जेक्ट को इनिशिअलाइज़ किया यह उनको प्रिंट करेगा
कहने के लिए laptop और 35000
आगे एक अन्य इंस्टैंस या ऑब्जेक्ट को इनिशिअलाइज़ करें
अब इस ऑब्जेक्ट को product_object_2 नाम देते हैं
इस बार name और price को वैल्यूज़ का एक अन्य सेट देते हैं
अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टैंस मेथड्स name और price कॉल करते हैं
आगे टर्मिनल पर वापस जाते हैं और पहले की तरह कोड निष्पादित करते हैं
आप ध्यान देंगे कि यह सफलतापूर्वक निष्पादित करता है और यह नयी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है
यह सिद्ध करता है कि इंस्टैंस मेथड्स उस क्लास product के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उपलब्ध हैं
अब आप अपना खुद का इंस्टैंस मेथड्स लिखने में सक्षम होने चाहिए
आगे देखते हैं कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं
क्लास मेथड्स केवल क्लास के लिए उपलब्ध मेथड्स होते हैं
ये मेथड्स क्लास के इंस्टैंस के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं
आप भिन्न तरीके से क्लास मेथड्स को परिभाषित कर सकते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
बुनियादी स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह gedit में एक नयी फाइल बनाएं
इसे class_methodsrb नाम दें
मेरे पास क्लास मेथड्स का एक कार्यकारी उदाहरण है
आप ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं
मैंने पहले की तरह एक product class परिभाषित किया है
मैंने पहले की तरह एक initializer भी कॉल किया है
हाँलाकि इस समय मैंने description नामक एक अतिरिक्त argument जोड़ा है
मैं पहले की तरह instance variables के विपरीत वैल्यूज़ को रखने के लिए क्लास वेरिएबल्स प्रयोग कर रही हूँ
यह क्लास आपको तीन भिन्न तरीके दिखायेगा जिससे कोई व्यक्ति क्लास मेथड्स को परिभाषित कर सके
name के लिए घोषित क्लास मेथड को जाँचें
यहाँ यह क्लास नेम product प्रयोग करके परिभाषित होता है
फिर दूसरे क्लास मेथड्स घोषणा को जाँचें
यहाँ मैंने self कीवर्ड प्रयोग किया है
आगे तीसरा तरीका जाँचें जिससे आप क्लास मेथड्स परिभाषित कर सकें
अब इस क्लास मेथड्स को कार्यान्वित करते हैं
अब सबसे पहले पूर्व की तरह product का ऑब्जेक्ट इनिशिअलाइज़ करते हैं
इस समय हम description के लिए भी एक वैल्यू दे रहे हैं
अब यहाँ प्रदर्शित क्लास मेथड्स को कॉल करते हैं
अब कोड को निष्पादित करते हैं और आउटपुट का निरिक्षण करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और पहले की तरह कोड निष्पादित करें
आप देखेंगे कि यह name price और description के लिए वैल्यूज़ प्रिंट करेगा
अब आप अपने खुद के class methods लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
आगे हम देखेंगे कि accessor methods क्या होते हैं
ruby क्लासेस में परिभाषित डेटा को एक्सेस करने के लिए accessor methods प्रयोग करता है
accessor methods setter methods और getter methods से बनता है
setter methods वैल्यूज़ सेट करता है
getter methods उन वैल्यूज़ को प्राप्त करता है
ruby इन मेथड्स को घोषित करने के लिए शब्द attr_accessor प्रयोग करता है
अब accessor methods का एक उदाहरण देखते हैं
बुनियादी स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित की तरह gedit में एक नयी फाइल बनाएं
इसे accessor_methodsrb नाम दें
मेरे पास accessor methods के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है
आप इस ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं
इस उदाहरण में मैंने product नामक एक क्लास परिभाषित की है
मैंने name और price के लिए attr_accessor घोषित किया है
इन मेथड्स को प्रयोग करने के लिए बस इतना ही करने की आवश्यकता है
अब इसे कार्यान्वित करते हैं
मैंने एक product ऑब्जेक्ट इनिशिअलाइज़ किया है
फिर मैंने product ऑब्जेक्ट के name और price सेट किये हैं
यह इसलिए संभव है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से attr_declaration वैल्यूज़ सेट करने के लिए मेथड्स बनाता है
फिर मैंने name और price के लिए getter मेथड्स प्रयोग करके वैल्यूज़ प्रिंट करने का प्रयत्न किया है
इन getter मेथड्स का भी attr_accessor की घोषणा से निर्माण किया गया था
अब पहले की तरह कोड निष्पादित करते हैं
आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ सेट की गयी थीं यह उन्हें प्रिंट करता है
अब से आप अपने खुद के accessor methods लिखने में सक्षम होने चाहिए
एक चीज़ जो ध्यान देने की है कि डिफ़ॉल्ट रूप से accessor methods इंस्टैंस मेथड्स होते हैं
इसलिए ये क्लास product के भिन्न इंस्टैंसेस से एक्सेस किये जा सकते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: इंस्टैंस मेथड्स क्लास मेथड्स और एक्सेसर मेथड्स के बारे में
एक नियत कार्य में: temperature नामक एक क्लास परिभाषित करें
ruby का एक्सेसर मेथड सिंटेक्स प्रयोग करके एक इंस्टैंस मेथड लिखें
यह मेथड दिए हुए fahrenheit के लिए celsius की गणना करना चाहिए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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें